ये सामने एक हरा टब रखा हुआ है और दो खंबे लगे हैं जो सफेद--

कलर की है जिसमें एक ताला लगा हुआ है दो कुर्सी रखी हुई है एक पीले कलर की एक ग्रे --

और नीचे साइड में कुछ पेड़े दिखाई दे रहे हैं और सामने एक--

डेडे- दरवाल डेरी लिखा हुआ है और सामने दीवार पर कुछ प पर्चे लगे हुए हैं।

काली पॉलीथिन में बहोत सारे रंग बिरंगे फूलों के छोटे छोटे पौधे--

सफेद और नीचे लाल कलर की है और दूर एक आदमी दिख रहा है जो सफेद कपड़े पेहने हुए है और बिल्डिंग है जिसकी ऊपर एक--

एक बड़ा स्वमिंग पोल दिख रहा है जिसका पानी हरा दिख नीला नीला दिख रहा है जिसके --

घास लगी हुई है जिनके हाथों में पिंक कलर के पन्नी वाले गिफ्ट हैंऔर कुछ बच्चे भी हैं।